बहोत सारे लोग दिखाए गए हैं।

ये दृश्य दिन की है।

इस चित्र में दिन का दृश्य दिखाया गया है।

एक बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

ये तस्वीर रात की है।

छवि में एक कपड़े का दुकान दिखाया गया है।

बहुत सारे लाइट्स जलते हुए दिखाया गया है।

एक आदमी दिख रहा है।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

छवि में बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

चित्र में एक छोटा सा घर दिख रहा है ।

इस चित्र में एक सुपर मार्केट का अंदर का दृश्य दिखाया गया है।

दुकान के अंदर बहोत सारे सामान रखे हुए है।

बहोत सारे खिलौने रखे हुए दिख रहे हैं।

यह दृश्य में दोपहर का समय दिखाया गया है ।

इस चित्र में एक घर के सामने का दृश्य दिखाई दे रहा है।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

ये छवि दिन के समय का है।

चित्र में बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक आदमी दिख रहा है।

इस छवि में नदी दिखाया गया है।

तस्वीर में बहुत सारे फूलों के गमले दिख रहे हैं।

इस चित्र में माल के अंदर का दृश्य दिखाया गया है।

कुछ ए_सी दिखाए गए हैं।

चित्र में गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक प्लेग्राउंड का दृश्य दिखाया गया है।

चित्र में कुछ गाड़ियां दिखाई दे रहे हैं।

ये तस्वीर दिन की है।

इस चित्र में एक शॉपिंग मॉल के सामने का दृश्य दिखाया गया है।

बहुत सारे लोग माल के सामने दिखाई दे रहे हैं।

चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ दिख रहे है।

ये चित्र दिन का है।

कुछ लाइट्स जलते हुए दिखाई गई है।

इस तस्वीर में कुछ घर दिखाए गए हैं।

चित्र में एक गाड़ी दिखाया गया है।

यह चित्र दिन की है।